तस्वीर देख रहे हैं इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि एक स्विमिंग है जिसकी कि सफाई हो रही है जिसमें कि सफाई चल रही है और ये एक बड़ा स्विमिंग पूल है जो कि इधर से ज्यादा गहरा नहीं है उधर से गहरा है।

ये जोह जौहर का टाइम है जिस के नमाज के बाद का टाइम --

ये बंदा सबसे आगे चल रहा है इसके पास भी स्पोर्ट जूते कपड़े नहीं हैं।

जिसमें कि यहां पर कुछ टेबल भी है और ये सब मतलब वही रस्सी वाले --

एक मंदिर है जिसमें कि यहां पर मतलब --

ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं इसमें नर्सिंग होम है।